यहाँ एक मन्दिर| उस मन्दिर के सामने रंग बिरंगे कलर से किया हुआ है।

कलर्स है। कुछ रबड़स के पैकेट भी रखे हुए हैं। और --

यहां एक कॉफी स्टॉल है जो एक रोड पे लगीं हुई है। वहां एक पर्सन है जो चाय पी रहे हैं।